इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है हम देखते हैं कि डाइरेक्टरी में इमेज्स को कैसे सूचीबद्ध करना है
यह ट्यूटोरियल में फाइल्स को सूचीबद्ध करना और html कोड को एक इमेज टैग के उपयोग के लिए बदलना ताकि डाइरेक्टरी में सूचीबद्ध इमेज्स को एको कर सकें
परिणाम कुछ इस तरह से नज़र आएगा
मैंने 8 इमेज बनाई हैं और यह इस तरह से पेज पर सूचीबद्ध होंगे यह सारे अलगअलग इमेज हैं
मैं दिखाता हूँ कि मैं अपनी डाइरेक्टरी की संरचना कैसे सेट की है यह इस प्रकार से है
मेरे पास show dot php फाइल है जिसके साथ हम काम करेंगे
और मेरे पास मेरा इमेज्स फोल्डर है और इसमें इमेज्स सूचीबद्ध हैं जैसा कि दिखाया गया है
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौनसे फॉर्मेट में हैं
यह मिश्रित फॉर्मेट हो सकते हैं या कोई एक फॉर्मेट और html वाली कोई भी डिस्प्ले या इमेज फाइल चलेगी
अतः यहाँ हमारी show dot php है
और फिलहाल यह खाली है
हमें अपनी php टैग्स की आवश्यकता होगी
पहला काम हम यह करेंगे कि अपनी इमेज्स वाली डाइरेक्टरी के साथ एक वेरिएबल सेटअप करेंगे
और जैसे कि मैंने पहले दिखाया यह images है और यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं
चिन्हों का ध्यान रखें जैसे कि बैक स्लैश यह विशेष अक्षर हैं जो बैक स्लैश के बाद आने वाले अक्षर को हटा देता है
अतः उदाहरण के लिए यदि आपके पास images forward slash photos है तो यह php को imageshotos लिखेगा क्योंकि यह अक्षर यहाँ p को हटा देता है
अतः ध्यान रखें कि आप फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करें और हाँ यहाँ ये photos नहीं हैं
अब हमें open dir फंक्शन का उपयोग करना है
यह हमारे लिए डाइरेक्टरी को ओपन करेगा
यह डाइरेक्टरी के कंटेंट्स नहीं होगा
यह एक विशिष्ट डाइरेक्टरी ओपन करेगी यानि यह डाइरेक्टरी
अतः इसे ऐसे ही रखने के बजाय यदि हम लिखते हैं if open dir equals to open dir नामक एक नई वेरिएबल और dir अतः हम इससे इसको मैच कर रहे हैं
वास्तव में यह क्या करता है कि यह कहता है यदि यह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है और फिर हमारी ओपन डाइरेक्टरी को open dir निर्दिष्ट करेगा ताकि बाद में हम इसमें बदलाव कर सकें
हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि आपकी डाइरेक्टरी मौजूद नहीं रहती हमें काफी सारे कोड और एरर मिलेंगे
यह यहाँ कहता है यदि कोई एरर नहीं हैं और फिर हम इसके भीतर कोड और अपने ब्लाक के साथ आगे बढ़ सकते हैं
ओके अगला थोडासा कठिन है
चलिए इसे ऐनोटेट करते हैं
यह डाइरेक्टरी ओपन करने के लिए है
और इसके भीतर हम लिखते हैं read dir डाइरेक्टरी को पढ़ने के लिए
और यह हम while लूप के साथ करेंगे क्योंकि while लूप के आसपास प्रत्येक लूप के लिए हम एको करना चाहते हैं या इमेज की प्रत्येक इमेज फोल्डर के बीच प्रदर्शित करना चाहते हैं
अतः हम अपने while लूप के साथ शुरू करेंगे हम वह बनाएँगे जो इसमें रहेगा और यहाँ हमारे कोड का ब्लॉक है जिसे हम अपने while लूप के लिए निष्पादित करेंगे
ओके इसके लिए हम क्या करते हैं यदि file equals read directory यह नया फंक्शन है जिसे मैंने अभी परिचित कराया है
और आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आपको इसके भीतर open dir वेरिएबल टाइप करना है
अतः यह मूलतः डाइरेक्टरी पढ़ने के लिए है जिसे हमने open dir फंक्शन का उपयोग करके पहले ही ओपन किया था
अतः यह दोनों काफी उपयोगी फंक्शंस हैं जिसे हम एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं
और फिरसे हम यहाँ इसे मान्य करेंगे और कहेंगे यदि यह false के समान नहीं है या यदि यह समान नहीं है या यदि यह नहीं खुलता है या यदि यह नहीं पढ़ा जा सकता है इसका मतलब है हम बाद में कुछ एरर्स रन कर सकते हैं
और अब हमें संरचना को शुरू करना होगा
हमें इसे कोष्ठक में डालना है
अतः इसे कोष्ठक में डालते हैं
ओके तो यह हमारा पूरा while स्टेटमेंट होना चाहिए
अब इसके भीतर इसे करने का एक आसान तरीका है क्योंकि हमने यह फाइल वेरिएबल बनाई है
और हम इस while लूप के भीतर हैं इसलिए यह इस डाइरेक्टरी में मौजूद सभी फाइल के लिए अपडेट करेगा
अब हम लिखते हैं echo file और इसके अंत में br जोड़ना चाहेंगे
अब यदि हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं कि हमारी सभी डाइरेक्टरी सूचीबद्ध हैं
डाइरेक्टरी सूचीबद्ध करने पर कुछ और ट्यूटोरियल्स हैं मुझे लगता है मैंने पहले ही बताया है
यहाँ डॉट और डबल डॉट हैं यह डाइरेक्टरी संरचना के लिए मानक चिन्ह हैं
डॉट वर्त्तमान डाइरेक्टरी है दो डॉट्स वापस जाने के लिए और ऐसा ही कुछ
लेकिन हमें अब लूप के भीतर इसकी पुष्टि करनी होगी यह ध्यान में रखने के लिए कि हम इस डॉट और पूर्णविराम को एको न करें – माफ़ कीजिये इन दो डोट्स को
इसका कारण है यदि हम इन्हें इमेज के रूप में दर्शा रहे हैं यह वास्तव में एक इमेज नहीं है और यह भी असल में इमेज नहीं है
अतः इसे हमें हटाना होगा
तो मैं क्या करूँगा मैं लिखता हूँ फाइल डॉट के समान नहीं हैं if file doesnt equal dot और हमें or की जगह and की ज़रूरत है और फाइल डॉट डॉट के समान नहीं हैंfile doesnt equal dot dot
अतः जैसे ही लूप करते हैं यह कहता है कि क्या यह इसके समान है
पहले केस में यह हाँ होगा इसलिए हम अपने if के भीतर इस स्टेटमेंट को हटा देंगे – हमारे if स्टेटमेंट के भीतर की कमांड
और साथ ही हम इसके लिए भी जाँच कर रहे हैं अतः दोनों ट्रू होंगे
अब हम रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि यह गायब हो गए हैं
अगली चीज़ हमें जो करनी है वह है इस फाइल वेरिएबल में फेर बदल ताकि वास्तव में एक इमेज बनें
अतः में इन्हें हटा देता हूँ और omni वर्ड के रूप में कुछ html कोड लिखेंगे
अतः यहाँ image source इमेज सोर्स किसी के समान है
आप हाईट और विड्थ स्पष्ट कर सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी इमेज में पहले से ही हाईट और विड्थ सेट किए हैं
यदि आपके पास विभिन्न साइज़ के इमेज हैं आप उन्हें समान साइज़ में रखना चाहेंगे और फिर उन पर हाइपरलिंक ताकि व्यक्तिगत रूप से उन पर क्लिक करके देख सकें
यह काफी सरल और सीधा है और इसे करने के लिए php कोड बताता हूँ
और फिर प्रत्येक के बाद ब्रेक लिखेंगे
आप सोच रहे होंगे कि यह फाइल डालेगा लेकिन जब रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं कि हमें टूटी हुई इमेज मिली हैं
इसका कारण है यदि मैं properties क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं हमने कहा है directory images और image 1
यहाँ हमें इमेज्स डाइरेक्टरी की आवश्यकता हैं
अतः हम images लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिए पहले से ही वेरिएबल है जो है dir
हम कहते हैं dir forward slash file अतः यह images forward slash file होगा
अब जब रिफ्रेश करते हैं आप देखते हैं कि वह पेज पर वापस आए हैं जिसे मैंने ट्यूटोरियल की शुरुआत में बताया था
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही चीजों को करने के कई अन्य तरीके हैं
आपको कोई भी कठिनाई है तो कृपया मुझसे संपर्क करें आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी
यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद